और बलून झालर वगैरा से इसे सजाया गया है और बहुत सारी भीड़-भाड़ है।

इस पिक मे अ विष्णु शुगर मिल्क अ लिमिटेड दिखाया जा रहा हैं।

इमेज में एक कवर्ड शो हो रहा है अ प्लाइ का ये कवर्ड है जिस पे कांच के दरवाजे लगे हुए हैं ।

कवर्ड के अंदर ये एक आर्ट पीस टाइप का लग रहा है जिसमे बहुत सारे पक्षियों की अ इमेजेज या फिर स्टैचू रखे हुए हैं ।

इमेज एक प्लेग्राउन्ड की है जहाँ पर ग्राउन्ड मे छोटी छोटी घास उगाई गई है और नीचे साइड जाती हुई सीढ़िया दिख रही हैं।

पॉण्ड पे बहुत सारे युवक दिख रहे हैं जो की बैठे हुए है कुछ खड़े हुए हैं और पीछे बहुत सारी बिल्डिंग्स --

जो की किसी धातु के बने हुए हैं ये पुरानी योद्धाओं की योद्धाओ को ले के उनके स्टैचू बनाए गए हैं।

जिसमें अअ चेयर्स रखी हुई हैं टेबल्स हैं। टेबल्स के ऊपर पार्टिशन किया गया है आजूबाजू से कवर किया गया है ताकि अ आजूबाजू का किसी को दिखाई ना दे--